इसमें बहुत अंधेरा है इसमें लाइट जलाया हुआ है ये इस आदमी ने हरे कलर का टी-शर्ट पेहेन रखा है।

और ठीक उसके ऊपर एक ए.सी. वेंट भी लगे हैं जो इस यहाँ पर कस्टमर आने वाले को ठंडा महसूस कराय इसमें बहुत सारा फेस वॉश और ऑइल भी रखा हुआ है।

इस इसमें बहुत सारे मशीन लगे हुए है आंखों को स्कैन करने के लिए और ठीक इसके नीचे एक कुर्सी लगी हुई है कस्टमर को बैठने के लिए या फिर मरीज को।

किचन का किचन का बटन का सामान रखा गया है रोटी पकाना इत्यादि सारे सामान रखे गए हैं ठीक उसके बगल में कुछ राशन का समान दिख रहा है और बैग वगैरा दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक मनुष्य खड़ा है जो की उजले कलर का ड्रेस पहना हुआ है यह एक क्रिस्चियन है।